तीन व्यक्ति खड़े हैं और तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे चेयर हैं ।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि यह एक दुकान है और दुकान के अन्दर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बुक्स पेन --

इस इमेज में दिखाई दे रहा है की यह एक स्कूल है जो की येलो कलर का है ना और यहाँ पे खम्भे दिखाई दे रही है।

और एक व्यक्ति बैठा है जो की पत्थर तोड़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी व्हाइट बोरियां रखी हुई है और एक ट्रक खड़ा है जो की ग्रीन का है।